बेड है। सामने दो शायद आदमी सामाने खरीदने गए हो।

फ्रंट पे शीशा लगाया गया है। अंदर सजावट भी काफी अच्छी है।